इस दृश्य के अंदर हमें एक बैंक व एक ए_टी_एम नजर आ रहा है।

एक बाएं ओर एक ऑफिस नजर आ रहा है जो की टी ट्रेनीटी कॉलेज ऑफ कॉमर्स का है।

यहाँ के पेड़ पौधे बहोत ही हरे भरे हैं यहां की हवा बहुत ही ताजा व शुद्ध नजर आ दिखती है।

इसके अंदर हम हमारी किसी भी रोग व अन्य समस्याओं का निवारण के लिए --

यहां पर बहोत सारे लोग बस में बैठकर एक जगह से दूसरी जगह जा सकते है जहां इसके अंदर --

यह दृश्य रोशन मोटर्स का है इसके अंदर टाटा श्री रतन टाटा जी की कंपनी है।

इसके अंदर हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति भी देख सकते हैं।

में हम देख सकते हैं कि इसके अंदर जलेबी है।

यह दृश्य एक रेस्टोरेंट का नजर आ रहा है।

यहां पर लकड़ी से बना फर्नीचर दिखने में बहोत ही अच्छा लग रहा है।

जो राजा साहब द्वारा बहुत ही--

यह दृश्य एक मंडी का है जोकि बाबूलाल विजय सिंह के नाम पर है यहां पर --

यह दृश्य एक पेट्रोल पंप का है।

जो की बस कार की सर्विस सेंटर है यहां पर स्पेयर पार्ट्स एक्सेसरीस --